यहाँ पर कुछ समान रखा हुआ हैं और यह--

यहां पर एक बेंच लगा हुआ है बेंच पर कुछ बोतलें रखी --